इस फोटो में एक बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। उस नदी में पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजा दिखाई दे रहा है उस दरवाजे पर भी लाल और पीली लाइट दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक मोर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक पुराना किला दिखाई दे रहा हैं।

उन लड़कियों ने अलग अलग कलर के कारपेट बिछाए हुए हैं।

उन आदमियों ने अलग अलग कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

इस फोटो में एक बर्थडे की पार्टी दिखाई दे रही है उस पार्टी में--

इस फोटो में बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रही है इस फोटो में मशीनों के को सुधारने के --

इस फोटो में एक सर्विसिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

किराने की दुकान दिखाई दे रही है उस दुकान में सेव मिक्सचर के--

फोटो में एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

कंप्यूटर की दुकान पे एक बेनर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक होटल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बारात दिखाई दे रही है उस बारात में आदमी हो--

उस दुकान में अलग अलग तरह की--

इस फोटो में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

वेसिंग दिखाई दे रही है उस वेसींग के ऊपर नल दिखाई दे रहे हैं।